और इसके यहां से लेकर गांव में हर एक गांव में एक किराना स्टोर होता है जैसा आप जानते हैं हर एक गांव में किराना स्टोर होता ही है।

और यहां पर प्रतिदिन भगवान की आरती महिमा कितना होती रहती--

और अन्य चीजों को लाते हैं एयरटेल के एयरटेल का नेट बहोत सेफ होता है यह नेटवन चारों तरफ अच्छे तरीके से रनिंग करता है।

यहां कमाल कितना अच्छा लग रहा है यहां कितना खूबसूरत तरीके से गया है जैसा आप जानते हैं।

और उसके सामने एक होटल है यहां पर लोग आते हैं और यहां रुकते हैं अपने परिवार--

यहां पर ढेर सारी के लोग बैठे हैं सामने बहोत बड़ा इमारत सामने सभी लोग बैठकर--